अ गार्डन में घास दिखाई दे रही है।

लोगों के बैठने के लिए टेबल कुर्सियां रखी गई हुई है पानी का कुलर रखा हुआ है अह हरियाली दिखाई दे रही है सजावट के लिए कुछ--

अ पास ही में एक होटल है सुपर मार्केट में बाहर कुछ सामान रखा हुआ है घर का --

और रेस्टोरेंट भी दिखने मे बहोत ही सुंदर दिख रहा है।

एक डमी पे एक सूट भी लगा हुआ है जो बहोत ही सुंदर लग रहा है पीछे रंग बिरंगे--

और सभी सब्जियां बहुत ही ताजी दिखाई दे रही हैं।

कुछ बड़ी सी बिल्डिंगे भी दिखाई दे--

कांच की खिड़कियां लगी होने की वजह से बाहर कुछ पेड़ पौधे भी दिखा--

इस जगह पर कुछ झूले दिखाई दे रहे। झूलों पर बैठा एक--

पर्दा लगा हुआ है जिस पर फ्रेशर्स लिखा गया है यहां बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था है साइड में एक बड़ा सा डी_जे --

यह किसी पार्लर का दृश्य लग रहा है जहां पर शहनाज हुसैन की दो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी के घर का दृश्य लग रहा है यहां पास में एक मंदिर है।

यह दृश्य किसी मॉल का लग रहा है।

यहां पर कोई आयोजन हो रहा है।

हरे भरी बड़े बड़ी छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखाई दे रहे है ये श दृश्य शायद किसी--

एक बहोत ही सुंदर सा गुलाबी फूल दिखाई दे रहा है।

ये दृश्य किसी मंदिर का लग रहा है जिसमें राधा और कृष्ण की ये मूर्ति--

फल और सब्जियां रखे हुए हैं ऊपर गोभी केले तरबूज पाइनएप्पल बहोत ही ताजे दिखाई दे रहे है।

कुछ झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही हैं।

और फूलों के रंग बहोत ही खूबसूरत लग रहे हैं।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

यह बिल्डिंग दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है।